एक केला का पत्ता भी दिखाई दे रहा है| जमीन कच्ची दिखाई दे रही है| ज़मीनों पर कुछ छोटे छोटे पैड पौधे उगे हुए है| घास भी दिखाई दे रहा है| आसमान नीला दिखाई दे रहा है| बहोत ही खूबसूरत पैड दिखाई दे रहा है।

एक ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है दो व्हाइट कलर की गेट दिखाई दे रही है एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है एक तार भी दिखाई दे रही यहां पे जमीनों पे मार्बल बिछी हुई है।

बहोत ही खूबसूरत सा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी घासे भी दिखाई दे रही है बहोत सारी पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है बहोत छोटे-छोटे गमलो में पेड़ को अ पोधो को बैठाया गया है। ब--

सारी फूले भी दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज और छाई कलर का है बहोत सारे लोग बैठे हुए है। आसमान नीला दिखाई--

एक पंडाल दिखाई दे रहा हैंइस पंडाल में कई सारे मूर्ति भी रखी गई हैं बहोत सारे फूल के माले भी दिखाई गई है नीचे घास भी रखा गया हैं।

बहुत ही खूबसूरत सा रोड साईड एरिया दिखाई दे रहा है एक बाइक भी दिखाई दे रही है काफी कार भी पार्क कोई है।

बहुत ही खूबसूरत सी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है लाइब्रेरी में बहोत सारे अलमारी अलमारी भी बनाए गई हैं बहुत सारी अलमारी है कवर्ड भी बनाए गए हैं।

बकरिया खाना खा रहे है| उनके पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रही है| यहां की जमीने कच्ची दीखाई दे रही है| ज़मीनों पर घास उगे हुए है| बहोत सारी झड़िया भी दिखाई दे रही है।

अलग अलग कलर के पिंक पर्पल येलो डार्क येलो व्हाइट कलर के फूल रखे गए है| यहाँ की जमीनें पक्की है | अ जमीनों पर बहुत सारे फूल बिछे हुए है ।

कुछ लोग मिलकर बहुत सारी चेयर लगइ-लगाई गई है| बीच मे कलिंद बिछे है| एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है गणेश का और एक दो पंखे भी दिखाई दे रहे है।

एक आदमी खड़ा हो कर सामान बेच रहा है| पाँच चार लोग मिल के खरीद रहे है।